और दो व्यक्ति भी खड़े हैं जो कि आपस में कुछ देख रहे हैं।

और सभी ने अपने हाथ को उठा रखा है।

अउर इसमें सोफे मेज भी रखी है और ए_सी भी लगी है।

यह एक बहुत अच्छी जिम है जिम के अंदर व्यक्ति महिलाएं जिम कर रही है।

आउर एक मेज के पास ही दो कुर्सियां लाल कलर की रखी है।

इसके अंदर कुछ घड़ी का सामान भी रखा है और इसके आस पास भी समान है।